पीछे बोट वगेरा नजर आ रही हैउलटी कुछ बोट सीधी नजर आ रही है बहुत सुन्दर काफी अच्छा नारा कुछ पेड़ वा--

काफी सारी घास नजर आ रही है दूर की तरफ मुझे एक जोपड़ी सी नजर आ रही है जोपड़ी के आई साइड में काफी करिया घास वगैरा नजर आ रही है बीच में एक छोटा सा पग पादरा नजर आ रहा है पाइप जैसा इसकेव आई साइड से पानी फेकता हूआ नजर आ रहा हैं।

सिल्वर रंग के रोड नजर आ रही है नीचे की तरफ मुझे एक ब्राउन कलर की मेट बिछी हुई आ रहा है फ्लोर व्हाइट कलर की नजर आ रही है ऊपर की दीवार--